नीचे ने ऑरेंज कलर का पैंट पहना हुआ है ऊपर में रेड कलर का टीशर्ट हैं।

नीचे में एक टीवी चल रहा है ऊपर में एक कैमरा लगा हुआ है उसके बगल में एक वाइट लाइट लगा हुआ है।

फोटो में एक डॉग है गोल्डन कलर का लेट हुआ है उसके ऊपर में ग्रीन कलर का कपड़ा रखा है दो लोग है हाथ --

साइड साइड में छोटे-छोटे घांस है पीछे की तरफ रास्त है रास्ता के बगल में--

के नीचे में एक वाईट कलर का बोर्ड टंगा हुआ हैं।

अउ पुतला के उसके ऊपर में लिखा हुआ है वाइट कलर से--

कलर येलो और ब्लू कलर का है उसके बगल में स्लाइडर वाला है वाटर का येलो कलर का उसके बगल में ग्रीन कलर का है।

फोटो में पानी है पानी के बगल में वाटर राइड है जिसका कलर वाइट रेड येल्लो में हैं उ --

बगल में कुछ चेयर रखे हुए है वाइट कलर के--

पहना हुआ है हाँथ में वाइट और येलो कलर का ग्लव्स पहना हुआ है हाथ मे स्क्रू ड्राइवर हैं बगल मे पाइप हैं ब्लैक कलर का--

पहना हुआ है एक ने वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है ऊपर में ब्लू कलर का बोर्ड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है एच डी एफ सी --

फोटो में पानी है पानी के ऊपर में बहुत सारे राइड है राइड का कलर ऑरेंज और व्हाइट में है एक राइड का कलर --